और यह बाबर बावर्ची खाना हैं और यहां पर यहां औरते हैं जो कि आलू छिल रही हैं।

अ कपड़ा रखा है जो सब रेडीमेड है और छोटे बड़े सब --

हम इस तस्वीर में देख रहे है यह जो तस्वीर है।

की है जोकि क्लास में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे मार्कर का काम होता हैं।

अ होटल की है जहां पर खाना खाया जाता है। हम एक --

जो यहाँ पर हम देख रहे है है कि कच्चा है रेता पड़ा हुआ है। ये भैस जो चर रही --

ल उम् एक --